यहां मुझे एक फ्लोर दिख रहा है जो की टूटा फूटा है।

यहां सामने लोहे के रैक बने हुए हैं।

अ वो बोड़े रखे हुए व्हाइट और येलो कलर के--

ट्रैक्टर में लाल कलर के कर्टेन परदे लगे हुए हैं। पीछे येलो कलर की वॉल है।